सीढ़ियां बनी हुई है नीचे स्कूटी लगी हुई है।

जोकि एक आ वे वोकेशन के लिए बहोत अच्छा एरिया है।

और यह जो ऊपर पिलर बना हुआ है उस पर एक येलो कलर के अह--

और एक चेयर लगी हुई है।

सड़क के सामने काफी बड़े बड़े पहाड़ियां दिखाई दे रही हैं।

और एक जो है सड़क में पाइप दीख री है और घर दिख रहे हैं आस पास काफी सा--

एक सीढ़ी लगी हुई है और काफी सारे रैक हैं जिनमें काफी सारे अलग-अलग कलर के मैट रखे हुए हैं।

जिसमें छोटी बेल्ट हैं बड़ी बेल्ट हैं उससे बड़ी बेल्ट हैं अलग-अलग कलर की बेल्ट है।

और जिसपे मोटरसाइकल और स्कूटी की पिक्चर बनी हुई है।